यह चित्र एक सब्जी बाजार का दिख रहा है जहा थैले में लाल मिर्ची हरी मिर्ची दिख रही है मंडी में काफी लोग खड़े सब्जी खरीद रहे हैं।

यह चित्र एक कार्यालय का दिख रहा है जहाँ लाइटे जल रही है | एक व्यक्ति बैठ कर अपना काम कर रहा है उसके हाथ में कुछ पेपर है सफेद रंग के पे--

जिम की मशीने है एक लड़का पीछे की ओर एक्सरसाइज़ कर रहा है।